यह एक चित्र है | बहुत ही सुंदर है।

यह यहां ये चित्र दिखाई दे रहा है | यहां एक औरत भी है | यहां कुछ मंदिर टाइप का भी है।

ये चित्र दिखाई दे रहा है | यहां कुछ सफ़ेद बादल दिखाई दे रहा है।